आदमी मुर्गा खरीद रहा है।

और लंबी लंबी पेड़ पौधे हैं और एक--

शादी का डेकोरेशन किया गया है।

और सामने में स्कूटी लगा हुआ है।